येलो कलर के पिंक कलर के वाइट कलर के बोहोत सारी पेड़ हैं। ग्रीन कलर के --

यह एक पार्क टाइप है जिसका कलर ग्रे में है। इसकी रॉड में ब्लू कलर की पेंट है।

बोहोत सारी घास हैं। बोहोत बड़ी-बड़ी सी पेड़ हैं।